यह एक पूजा घर है इस घर में दो तीन मूर्ति हैं ।

यह एक सैलून है यह सैलून काफी बड़ी है।

इस टेंपू पर दो आदमी एक आदमी बैठे है एक खड़े है यहां एक आदमी भी--

इस गांव के भीतर तरह-तरह के पेड़ है। यहाँ का दृश्य काफी सुंदर है।

इस पंडाल में काफी सजावट किये गए हैं।

यह पंडाल मे दो दरवान है।

इस घर का बरांडा में पिलर लगा हुआ है।

यह आदमी सुई न एमे दवा भर रहे हैं।

यहाँ पर एक बाइक खड़ी है ।

यहाँ पर बहुत से बाइक खड़े है। यहाँ पर बहुत से आ --